और आगे की तरफ एक बॉक्स जैसे बने हुए हैं बहोत सारे।

ये बोट ब्लू और ग्रीन कलर का बना है।

यहां पे चार कंप्यूटर पड़े हैं।

जिसमें से दो सी_पी_यू है।

ये एक बर्तन की दुकान--

तरफ एक पहाड़ दिख रहा है जो थोड़ा धुंधला है।

यहां पास में कुछ मशीनें लगी हुई है।

ये एक जिम की तस्वीर है।

यहां पे काफी सारी मशीने लगी हुई है।

यहां पे झरने से काफी सारा पानी गिर रहा है नीचे काफी सारे पत्थर--

और ऊपर की तरफ दो तीन घर बने हुए हैं।

ये एक नल की दुकान है।

यहां पे एक रेड कलर का दरवाजा बना है जिसपे--

यह तस्वीर में साइड में एक--